प्लेन का कलर सफेद है एण्ड उप्पर एक उठा हुआ है जो रेड कलर का है यहाँ पर घाँस है खुला आसमान जो नीले रंग का है।

यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर मिट्टी जो भूरे रंग का दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग भी है।

यहाँ पर एक बड़ी सी ब्लू कलर की मशीन रखी हुई है और काफी इलेक्ट्रिक बोर्ड भी है और यहाँ पर मोटे से पाइप भी है।

यहाँ पर एक बड़ी सी ब्लू कलर की मशीन रखी हुई है और काफी इलेक्ट्रिक बोर्ड भी है और यहाँ पर मोटे से पाइप भी है।